इस तस्वीर में मुझे कुछ बाइक दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बेंच दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ महिला दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ ड्रम दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ कोर्ट दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ हिरण दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक जाली दिखाई दे रही है।